नीचे फर्श को रेड कर दिया गया है लाइटाे से और बोहत लोग यहां घूम रहे हैं सभी ने अच्छे-अच्छे कपड़े भी पहने हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं।

यहां एक स्टेज प्रोग्राम है जिसमें ले लेडीजे अपना कर्तव्य दिखा रही है सभी ने उम्म हरे रंग के पत्ते हवा मे उछले है कुछ लोग इनका वीडियो ले रहे है।

यहाँ पर काम चल रहा है और एक आदमी खड़ा है और मजदूर अपना काम कर रहे हैं जिन्होंने पील कलर की टोपियाँ पेहनी हैं और सरिए बिछा रहे हैं और सफ़ेद कलर का कुछ टेबल पर रखा हुआ हैं।

इ दुकान का रंग पीला है जिसमे रेड कलर से विज्ञापन छपा है पीछे फ्रिज भी रखा है।

यहां दो लोग स्टेज पर फोटो खीचा रहे है पीछे हरे सफेद गुलाबी और रेड फूलो का गुलदस्ते सजाए हुए है चढ़ने के लिए टेबल है।

और सामने एक खंभा है जिसमें लाइटें लगी हुई है और गार्डन में हल्की-हल्की छोटी-सी घास भी है।

को सार्टिफिकेट देकर उनके साथ फोटो खिचाया जा रहा है और कुछ आदमी भी उनके साथ फोटो खिंचा रहे हैं एक औरत ने आसमानी कलर की साड़ी पहनी है।